आप देख सकते है यहाँ पे मछली बना रहे है डिब्बा भी दिखाई दे रहा है आदमी भी बोहत दिखाई दे रहे है एक कार भी दिखाई दे रही एक साइकिल भी पिच्छे दिखाई दे रहे हैं।

बैलूनो से भी सजाया गया है।